और यह मछली दिखने में काफी छोटी लग रही है।

एक सीढ़ी दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है।

और एक पाइप भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक ऑरेंज कलर का कार दिखाई दे रहा है।

और यहां पे ढेर सारे लोग खड़े हैं।

बाहर में ढेर सारे बड़े बड़े कार्टून भी रखे हुए है।

यहां पे एक औरत भी दिखाई दे रही है जिन्होंने मास लगाया हुआ है वाइट कलर का।

तो ब्लैक कलर के है एक बड़ा सा टेबुल के पास एक लैपटॉप रखा हुआ है।

उसके पास कुछ ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहे हैं जो वो भी रेड कलर के हैं।

और कुछ ईंटें दिखाई दे रहे हैं।

एक ब्लैक कलर का गैस दूसरा लाइट ब्राउन कलर का कलर का दिख रहा है।

यहां एक टेबल के ऊपर रखा हुआ यह टेबल ब्राउन कलर का है।

ये क्यू_आर कोड भी लगाया हुआ है।

और यह काफी दूर तक पेंट किया गया है जितने भी पेड़ है सब में।

ये नदी के पास में कुछ गांव दिखाई दे रहे हैं कुछ तार भी लगे हुए हैं।

ऊपर में कुछ लाइटें भी लगाई हुई हैं।

और नीचे में मेल्टन के भी कुछ बॉटल्स रखे हुए हैं।

उसके नीचे क्लियर मेंटेन का मिल्टन का बोतल पता चल रहा है।

जहां पे ढेर सारे लोग चढ़के ऊपर दर्शन के लिए जा रहे हैं।

इस तस्वीर में ढेर सारी कुर्सी दिखाई दे रहे हैं जो ब्लू ग्रीन कलर के है।

एक और बोतल दिखाई दे रहा है जो पीने वाला है।

यहाँ पे दो दुकानें दिखाई दे रही हैं।

दो कुर्सी दिखाई दे रही है।

और मिरर के आस पास ढेर सारे लाइट लगाए हुए हैं।

डिजाइन भी बना हुआ है फूलों का।

यहां पे ढेर सारे ब्लैक कलर के कुर्सी भी लगाए हुए हैं।

इन पे प्लास्टिक भी है और यहां पे एक बड़ा सा टेबल दिखाई दे रहा है।

और यहां पे दो तीन वाइट कलर के ए_सी दिखाई दे रहे हैं।

और एक ड्रम भी दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का।

इस तस्वीर में ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

यहां पे बीच में एक आदमी चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

और यह पिंजरा दिखने में काफी प्यारे लग रहे हैं।

इस तस्वीर में स्कूल के ढेर सारे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में कप दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

और यहाँ पे ब्लू कलर का बेंच और एक सिस्टर और पास ही में एक गमला का पेड़ दिखाई दे रहा है कुछ टेबल दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे ब्लैक ब्लैक कलर की खिड़की दिखाई दे रही है।